इस चित्र में हमें बहुत बड़ा मॉल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँं पर रिक्शा दिखाई दे रहा है। गाड़ी दिखाई दे रही है एक साइड में बिल्डिंग दिखाई --

और यहाँं पर ज माहिला भी दिखाई दे रही है।

एक ब्लू कलर का पन्नी डली है और रेत दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रही है और दो जेंट्स दिखाई दे रहे हैं पेड़ --

लेडिस दिखाई दे रही हैं और ये गोल्डन कलर की दीवार दिखाई दे रही है। फैन लगे हैं और राइट साइड में लाइट लगी हैं। बहोत सारे जेंट्स और लेडिस दिख रहे --